कुछ चार पहियां वाहन भी लगे हैं।

यह एक केक का दृश्य है।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

दुकान के होल्डिंग पे क्वालिटी वॉल्स लिखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे कार्टून्स दिख रहे हैं।

सामने एक सेल्फ दिख रहा है जिसपे कुछ वस्तुएं रखी हुई है।

यहां टेबल और चेयर भी दिखाई दे रहे है।

यहां डेस्क और बेंच भी लगे हैं।

पंडाल को गुब्बारों से सजाया गया है।

यहां पे मॉनिटर्स भी नजर आ रहे हैं।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में साइकिल नजर आ रही है।

पीछे स्ट्रीट लाइट दिख रही है।

एक मिरर भी लगा हुआ है।

यहां व्हाइट बोर्ड भी लगे हैं।

इस दृश्य में कुछ वस्तुएं दिख रही हैं।